जा सकते है सामने से कुल एक व्यक्ति स्कूटर से जाता हुआ नजर आ रहा है उसके दूसरे तरफ में बहुत सारे स्कूटर खड़े हुए देखे जा सकते है अगल बगल में और भी मकाने दिखाई दे --

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रही है बस का रंग ग्रीन देखा जा सकता है एक बस के ऊपर में कुछ लोग चढ़ते हुए देखा जा रहा है एंड सामने की तरफ में कुछ लोग आते जाते नजर आ रहे है।

यहाँ पे बोहत सारे लोग बैठे हुए है और सामने एक व्यक्ति फ़ोन पे बात करता हुए नज़र आ रहा है यह यहाँ पर लेटा हुआ है और इसकी दूसरी तरफ में कुछ बॉटले भी रखी देखी जा--